यहाँ पे छोटे-छोटे स्क्रैच को रेमोव किया जाता है जेसा कि आप देख सकते एक आदमी यहाँ पे स्क्रैच रेमोव कर रहे है यह बहुत ही अच्छा शॉप है।